ये साइड में एक अ आग बुझाने वाला सेलेन्डर है। दूस --

दूसरे साइड में बजरंगबली का एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है।

दूसरे साइड में दो आदमी चार पहिया से जा रहे हैं जो हेलमेट लगाए हुए हैं।

इसके बाहर एक छोटी सी रेलिंग है जिसमें जिसके अंदर बहुत सारी ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

यह धसा हुआ है यहां पर बहोत सारे गुम्मे पड़े हुए हैं।

यहां पर दूसरे साइड में एक उजेला लगा हुआ है।

उधर दूसरे साइड में खेलने वाले बच्चों के बहुत सारी सामान रखी हुई है।

दूसरे साइड में रेड कलर के लाइन से गमले रखे हुए हैं जिसमें पेड़ लगे हुए हैं।

और दूसरे साइड में बहुत लोग बैठे हुए हैं जिनका चेहरा ब्लर है।

यहां पर तीन आदमी है दूसरे साइड में एक आदमी जिम कर रहा है।

यह एक बड़ी बस है जिसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी चढ़ रहा है यह क्रीम और येलो कलर की है।

यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका चेहला ब्लर है।

यह एक बहोत बड़ी सी दुकान है जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां पर ऊपर छोटी छोटी छोटी छोटी रेलिंग हैं।

दूसरे साइड में बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं लाइन से ग्रीन कलर के।

दूसरे साइड में पोस्टर लगा है जिसपे गाड़ी लगी हुई है।

यहां पर एक बड़ा ब्लैक कलर का दरवाजा लगा हुआ है।